बैठे हैं चेयर पे --

और यहाँ एक बड़ा सा टावर भी दिख रहा है साइड साइड में पेड़ भी है पेड़ हर जगह लगाना चाहिए हमें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों से।

यह बहुत सारे लोग पेट्रोल लेते हैं बस ट्रक --

नक्शा खराब लग रहा हैं और आगे टूटा हुआ घर भी है।

कंप्यूटर क्लास यह लाइब्रेरी है यहाँ खंड-खंड में बना कर के नंबरिंग भी लगा गया है।